और हाथी लोग को खरीदते हैं बेचते हैं और ये काफी बड़ा मेला लगता है यहाँ पर।

ये रोड बन रहा है और इसका लिंटर रोड है ये काफी अच्छा बना रहे है भाई साहब रोड तो नही है ये छत बन रहा है छत का लिंटर हो रहा है।